बड़ा सा गाड़ी है बहुत बड़ा टेलर ।

केला का पेड़ है और सूखा एक पेड़ है एक बड़ा पेड़ है।

एक बहुत बड़ा सा पुल है जो नदी का।

और खिड़की है खिड़की के पास से पेड़ नजर आ रहा है।

एक सामने इधर दरवाजा है साइड में--

चबूतरा वाइट कलर क पेंट करल है।

तीन गो घर है जो लाइट आ रहा है लाइट सीधा उसमें से।

एक दुकान है मॉल टाइप पर।

उसके अंदर सामान रखल है।

नीचे लाल कलर का टाइल्स बिछा है।

चेहरा नहीं दिख रहा है।

काउंटर में सब कुछ सामान रखल ह ।

बेंच पर रखा है पानी का बोतल ।

ये सामने में लाल डब्बा में पेप्सी का बोतल रखा है ब्लू कलर का डब्बा है।

ऊपर में शीशा लगल है लाइट बत्ती जल रहा है रंग बिरंग का--